फलो के बहुत से ठेल ठेले रोड के किनारे खड़े दिख रहे है रोड पे एक मोटा साइकिल भी चलती हुई दिख रही हैं ।

और हाथ जोड़े हुए दिखाई दे रहे है इसमें--

इस फोटो में बहुत सा पानी दिख रहा है जोकि तालाब लग रहा है पानी के--

एक दो चेयरे रखी हुई है जो के नाई की दुकान में रखी होती है।

सब्जियाँ जमीन पे रखी हुई दिख रही है जोकि पन्नीयों में रखी हुई हैं ।

बहुत सारे है और नारियल के पेड़ो के पीछे सफ़ेद कलर की --

कुछ दुकान की आलमारी में जमे हुए है और कुछ फल--

जोकि पहाड़ के उच्च ऊँचे हिस्से में लगे हुए देख रहे है करीब में कुछ जंगली पेड़ भी है।